इनकी यहां पे विवाह की बहुत बड़ी यहां पे हवन हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं--

उनकी बाइक भी खड़ी है। ईट पत्थर भी पड़ा हुआ है। यहां बहोत सारे रेत मिट्टी का काम होता है।

यहां पर काफी बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पर एक बड़ी सी दुकान है।

यह मिठाई की दुकान काफी बड़ी है और यहां पर बहुत ज्यादा सफाई भी है यहां शीशे में चमक है और काफी--

यहां सजावट काफी अच्छी है और पेड़ भी लगे हुए है यहां खुला नीला आसमान है।

यहां एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के बहोत सारे वर्कर्स खड़े हैं।

सभी वर्कर को कोई सूचना दी जा रही है।

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यह कोई फ्लैट है।

फ्लैट के बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी है और एक स्कूटर भी खड़ा है।

यहां पे चिप्स कुरकुरे नमकीन बिस्किट चावल चीनी मिलते हैं।

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है यह कोई शहर एरिया लग रहा है।

यह रोड काफी साफ है और काफी अच्छा है।

पिंजड़ों में छोटे छोटे पक्षियों को कैद किया गया है यह काफी गलत है।

उनके सामने बड़ी सी टेबल रखी है और उसपे पर पुस्तके रखी है।

यहां बहोत सारे मसाले हैं और मैगी भी लगी हुई है।

और यह आदमी पर्दे की दुकान करता है यहां शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं।